वो उसका रंग लकड़ी जैसा है और ये लकड़ी का बॉक्स है। उसमें हल्की-हल्की सी लाइट की रोशनी भी नजर आ रही है।

और उसमें आसमान भी नजर आ रहा जो कि जो कि रंग-बिरंगे नजर आ रहा है। कुछ आसमानी रंग भी नजर आ रहा है।